यहा पर मुझे आई पी चौबे लाइब्रेरी लिखा हुआ दिख रहा है सेंट्रल लाइब्रेरी भी लिखा हुआ है और उसको चड जॉइन किया गया है।

यहां पर मेरे को गार्डन दिख रहा है बहुत अच्छे-अच्छे पेड़ लगे हुए हैं ऊपर बादल भी दिख रहा है लाइट की तार भी निकली हुई है अच्छे-अच्छे हरे हरे पेड़ भी दिख रहे हैं अच्छा रास्ता बना हुआ है डिजाइन में